सामने में ही एक गेट है और उसी गेट के सामने में चटाई बिछाया हुआ है।

और एक पेट्रोल पंप भी है।

यह एक फोटो का दृश्य है।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे साइकिल रखे हुए हैं।

बहुत सारे पीछे तरफ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं ।

और बहुत सारे टेबल हैं बहुत सारे टेबल का ऊपर में ऑर्डर करने वाला समान है।

बहुत सारी लड़की गोदी में बैग लेकर बैठी हुई है।

और छोटा सा भी गेट हैं एक बड़ा सा भी गेट हैं।

एक कार भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी है और उसके ऊपर में एक टीना भी लगा हुआ है।

यह एक फोटो का दृश्य है।